जैसे कि हम देख सकते हैं सामने हमको जिम दिख रही है जिम के अंदर हमको सामान दिख रहा है जिम में सामान करने की औचित्य मशीने दिख रही है बेड लिफ्ट की मशीने दिख रही है चेस्ट की मशीने दिख रही हैबैक की मशीने दिख रही है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको बोर्ड लगे हुए दिख रहे है हमको जिम का बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है ऊपर जो कि ब्लैक कलर का दिख रहा है नीचे हमको लेडिस एंड किड्स वियर के बै बैनर लगा हुआ दिख रहा है साथ में हमको सर्विस सेंटर दिख रहा है और थॉट सेंटर दिख --

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको एक नदी दिख रही है नदी मे पानी भरा हुआ दिख रहा है जो कि तालाब जैसी लग रही हैबहुत ही सुन्दर दिख रहा है नज़ारा पीछे हमको दो एक मंदिर दिख रहा है मंदिर कम्भुज दिख रहा है कम्भुज में हमको कलश दिख रहा है।

पांच मंज़िला इमारत दिख रही है सफ़ेद कलर की इमारत है जिसपे लाइटिंग करि हुई हैलाइटिंग से इसका कलर बदला हुआ दिख रहा है ये कलर हमको गुलाबी दिख रहा है जो की बहुत अच्छा दिख रहा है बीच- बीच में रेड भी दिख रहा है ब्लू भी दिख रहा है हरा भी दिख रहा है जो की बहुत सुन्दर दिख रहा है।

स्कूल में भी नहीं बाइके दिख रही है जिसमे एक स्कूटी दिख रही है बाइके दिख रही है जो की बहुत अच्छी दिख रही है बहुत ही सुन्दर दिख रही है पीले कलर की दीवारें दिख रही है जो की बहुत ही प्यारी लग रही है।